और वो स्टेज पर कार्यक्रम कर रही है स्टेज पे कार्यक्रम के फुटेज लाइव चलते हुए।

और स्टेज अच्छा सजाया गया लड़की बहुत ही अच्छी --

सामने एक चश्मेवाला लड़का ब्लू शर्ट ब्लू पैन्ट में खड़ा हो कर सामने फोटो खिचवा रहा है।

बोहोत ही अच्छा लाइटे और स्लिंग मतलब पूरे टोटल ऑल ओवर ये बोहोत ही अच्छा एक रेस्टोरेंट --

और मोटरसाइकिल खड़ी है। कुछ मोटरसाइकिलो पे जो है आदमी बैठे हुए है। कुछ लोग हे जो आ रहे है जा रहे है।

और पीछे चेयर पे दो कोचस बैठे हुए है जो उनका निरिक्षण कर रहे है।

बच्चे प्रैक्टिस करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे नेक्स्ट मे --

ये तस्वीर एक मैंरिज प्लेस की है और मैंरिज प्लेस के अन्दर एक जो मंडप लगा हुआ है।

और पीछे फ्रेम में आपको सूरज नज़र आ रहा सूरज गाल का स प्रकाश --

जो है पकवान बना रहा है और कुछ और भी है जो नज़र आ रहा है फ्रेम में।

और ये दुकानें बहोत सी लगी हुई हैं यहाँ पे और भी दिवाली के डेकोरेशन के आइटम और --

ये दृश्य एक बाग़ का है और बाग़ मे आपको एक लड़का नज़र आ रहा है जो पाइप से पानी को स्प्रे कर रहा है।

पीछे आपको बैकग्रॉउंड में एक घर नज़र आ रहा होगा।

ये दृश्य एक शोप का है ओर शॉप का नाम दुर्गा एंटरप्राइज हे ।

ये दृश्य एक खुले की है और आपको ये चौराहा नज़र आ रहा होगा। चौराहे एक तरफ आपको पेट्रोल पंप और पेट्रोल पंप में एक बस खड़ी है।

ये बैकग्राउंड में आपको आसमान नज़र आ रहा है और ये कच्चा रास्ता और कच्चे रास्ते के बाद एक सड़क बनी हुई है जो पार्क में है बीच में।

ये एक जो पे जो फोटो है ये एक डिश की है और ये डिश जो लोकल आपको --